और सामने टीन शेड के लगा हुआ है जिसके नीचे लोग खड़े हुए--

यह फोटो तो किसी हेरिटेज होटल की लग रही है।

साइड में चेयर्स लगी हुई है जोकि थोड़ी सी फैंसी टाइप की चेयर्स हैं तो उससे लग रहा है कि ये होटल का रिसेप्शन का फोटो है और कांच का गेट भी है।

यह फोटो तो किसी पार्क की फोटो है जिसके अंदर ग्राउंड बना हुआ है बीच में घास लगी हुई है।

जहां पर इंडिगो का एक छोटा सा प्लेन खड़ा है जो की देखने में पचास सीटर से भी काम का लग रहा है।